इसमें नारियल का पेड़ लगाये गये हैं | गमला है गमले में फूल लगाये गये हैं सीढ़ी बनाए गये हैं बहुत सारे खिड़कियाँ बनाये गये हैं |

नीचे लिखा हुआ है बगल में बहुत सारी दूकान है देखने में तो अच्छा लग रहा है टोल पे एक आदमी पैदल चल रहे हैं।

यह नदी है नदी बहुत बड़ा है नदी के किनारे-किनारे पौधे भी दिए हैं नदी में गाँव नाव है नाव पे गाँव बसा हुआ है।